और आसमान भी नज़र आ रहा है।

नीले और लाल रंग से रंगी गई है और यहां नीले रंग के कांच भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।